मेज़ के ऊपर बच्चों के कुछ चार्ट रखे हुए हैं।

कपड़े की दुकान में काफी रंग बिरंगे कपड़े लगे हुए है।

पास में एक डस्टबिन रखा हुआ है सामने एक अलमारी रखी हुई है।